सामने बहोत सारे लोहे रखे हुए हैं।

और इसमें एक जमीन पे रखा हुवा है और यहां --

और सामने मुझे एक स्वीपर दिख रहे है और एक गेट भी जो --

यहाँ पे एक बड़ा जिम दिख रहा है जिम में नीचे जो कारपेट बिछा हुआ है रेड कलर का है और उसके दोनों तरफ जो है बहोत सारे जिम वाले मशीन रखे हुए हैं।

उ भी पिंक कलर का ही है राधे-कृष्ण का मूर्ति का कलर वाइट येल्लो पिंक ग्रीन बहुत सारे कलर लगाए हुए हैं |